पास में एक रूम है रूम की छत टीन की है और एक दरवा--

दुकान भी है उसके पास एक बाइक है।

तीन आदमी है नीचे सामान पड़ा है।

दीवारों का कलर स्काई और व्हाइट है।

यह ब्रिज है और इसके नीचे बहोत बड़ी नदी है।

सामने एक मोटर मशीन है और उसके आसपास बहुत सारे लड़के हैं।